औरत के हाथों में चूड़ियां भी नजर आ रहे हैं।

और एक स्कूल का इनफार्मेशन बोर्ड भी दिख रहा है।

और तीन इंसान दिख रहा है।

और बहुत सारे बच्चों के कपड़े टंगाए गए हैं।

और बच्चों का जूना भी दिख रहा है।

इस पिक्चर में एक ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल का बिल्डिंग दिख रहा है।

बाइक में एक स्लोप रास्ता दिख रहा है।

इस पिक्चर में दुकान का अंदर दिखाया गया है।

इस तस्वीर में हॉस्पिटल रूम के अंदर का नजर आ रहा है।

तस्वीर में बहुत सारे मशीन भी नजर आ रहे हैं।

बैकग्राउंड में सुंदर सा पहाड़ दिख रहा है।

और बहुत बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में नौ बच्चे नजर आ रहे हैं।

और एक लॉक किया हुआ ग्रिल भी नजर आ रहा है।

और ऊपर सीलिंग पे एक लाइट भी नजर आ रहा है।

बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह को ब्लर किया गया है।

वॉल पे डेकोरेशन लाइट भी नजर आ रहे है।

चेयर के आगे एक टेबल भी नजर आ रहा है।

बेम्बू से बना हुआ बाउंड्री रेलिंग भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में क्लॉथ्स का शॉप नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक पावर हाउस का नजर आ रहा है।

नीचे हरी ग्रास भी नजर आ रहे हैं।

हाईवे के बगल में स्ट्रीट लाइट भी नजर आ रहे हैं।

शीशे पे पोस्टर भी लगा हुआ है।